यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं मूर्तियों तक जाने के लिए बहुत सारी सीढियाँ भी है आजू-बाजू में बहुत सारे घने पेड़ लगे हुए हैं उसके बाजू में एक बिल्डिंग भी है ।

नृत्य कर रही है। स्टेज के नीचे उतरने के लिए बहोत सारी सीडियाँ भी हैं।

रोड के आजू बाजू में बहुत साड़ी दुकान और बहुत साईं बिल्डिंग बनी है|

कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं बिल्डिंग के आगे एक पेड़ भी लगा हुआ है ।

ऊपर की तरफ नीला आसमान है और नीचे की तरफ ज़मीन पर वो आदमी खड़ा है।